और यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की सीढ़िया भी दिखाई दे रही है कुछ हरे भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।